सामने की लेडीज बैठी दिखाई दे रही है।

कई सारी लेडिसे एक साथ बैठी हुई दिखाई दे रही जो पूजा पाठ करती हुए दिखाई दे रही हैं।

मंदिर बने है दिखाई दे रहे हैं सामने एक मंदिर बनाया गया छोटा सा --

हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं दिन का समय नीचे --

ये हरी-हरी घास पुस लगी दिखाई दे रही सामने की ओर कई सारी चीजें लगी दिखाई दे रही --

वायरिंग आयरिंग फैली हुई दिखाई दे रही सामने कोई खेत बना हुआ दिखा रहा है जिसमें--

इधर खिड़कियां के गेटे लगे दिखाई दे रहे है।

पीछे बाउंड्री वाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर--

जल्ती हुए दिखाई दे रही है इंसान घूमते भागते हुए दिखाई दे रहे।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक नीले कलर की बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने बस के सामने--

सामने की ओर किधर हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कोई सारे--

पहाड़ वहाड़ बनाए गए सामने चीजे--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर हरे भरे पेड़ पौधे--

किधर अलमारी अलमारियां बनी है दिखाई दे री है सामने सामने की ओर एक दुकान खुली दिखाई दे दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो के सामने हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे सामने को।

खाली दिखाई दे रही नीला आसमान दिखाई दे रहा है सामने--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर सब पहाड़ अहाड़ बने पानी आनी--

बैठा हुआ दिखाइ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं किधर हरे भरे पेड़ पौ लगाए गए है सामने ओ--

पूरा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है नदी बनाई गयी खाई में।

किधर दिखाई धुवां ऊयां दिखाई दे रहा सामने कि ओर--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं हरी-भरी घांस फूल लगाई गई हैं दिन का समय दिखाई दे रहा है सामने की ओर।

दो-दो तरफ है पेड़-पौधे लगाये गये नीचे की ओर हरी-हरी घास-फूस चारा कई चीजें है। लगे हुए दिखाई दे रहे है। सामने की ओर की पेड़ --

लगे दिखाई दे रहे है हैंड वाले फोर्टी नाइन सामने--

दिखाई दे रहा है जो कंप्यूटर काम करते हुए दिखाई दे रहा है।